फोटो में सड़क के किनारे जाती हुई नीली काली सफ़ेद गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

हरा और नीले कलर का एक टैंकर जाता हुआ पानी की टंकी पेड़ पौधे झाड़ियां और नीले कलर की बाउन्ड्री पर गोलनुमा आकार में घास लगी --

फोटो में में एक तीन मंजिला इमारत माकन दिखाई दे रहा है जिसमे हलके नीले कलर से कलर और पटियाँ लाल कलर की दिखाई दे रही हैं।

फोटो में एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें टेबल कुर्सियां और कुछ लोग बैठे खड़े चलते फिरते नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।